ऊपर तीन तस्वीरे लगी हुई हैएक मे कुछ नियम लिखे हुए हैं एक थाली भी दिख रही है और पीतल का लोटा भी दिखाई दे रहा इधर एक व्यक्ति भी दिखाई